रोजाना यहाँ पर बहुत से लोग एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं और यह जिम बोहोत ही बड़ा है।

ये ऐक हॉस्पिटल का कमरा है जिस में बहुत सी खीड़किया बनी हुई है।

और यहा पर स्पीकर भी लगे हुए है।

एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का नाम एलेक्स हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल मे बहुत सारे कमरे है।

यहाँ पर बहुत से प्रकार की मूर्तिया रखी हुई है कुछ मूर्तिया जानवरो की है।